जहां पे बहुत सारी इलेक्ट्रोनिक के वस्तु रखे हुए है।

जैसे कि फोन है कूलर है वाशिंग मशीन है।

बीच में एक पिलर है और साइड में खिड़की भी है और एक डोर भी दिखाई दे रहा है और ग्रे कलर का --

यहां पे वॉल पे बहोत सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है डॉन'ट ओवरलोड सब --

यह एक पानी बह रहा है जहां से बीच--

यहां पे दो आंटी लोग बैठे हुए हैं जो मच्छी बेच रहे हैं।

बहोत सारे टाइप के अलग अलग मच्छि दिखाई दे रहे है।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

अ पंप वाले दिखाई दे रहा है और बहुत सारे फायर एक्सटिंगशन भी दिखाई दे रहा है।

ग्रास उगाया हुआ है और पेड़ भी लगाया है छोटे छोटे प्लांट किए हुए हैं और जो बिल्डिंग है --

एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप दिखाई दे रहा है जहां पे अ जो ग्लास का रैक बनाया हुआ है।

और ये ऊपर से लिया हुआ है फोटो बीच में एक ट्री दिखाई दे रही है।

बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं और ग्रास भी दिख रा है नीचे।

अह लकड़े के ऐसे जैसे कि मंदिर जैसे पिलर होता है।

एकअ टपेले के अंदर और एक का फिंगर दिखाई दे रहा है जो पकड़े हुए है ये एकअ --

जो एस_बी_आई करके लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया नीचे --

उसके सामने बहोत सारे बाइक स्कूटी और कार पार्क किया हुआ है।

और जो स्टैंड है उसके ऊपर लिरिक्स लगाया हुआ है और उनके हाथ में अ --

और ऊपर सीलिंग के ऊपर जो लाइट है अंदर वो ऑरेंज कलर का दिख रहा है और साइड में लाइट है वाइट कलर के।

और बाइक है स्कूटी हैं और ट्रक भी हैं और ट्रक के अंदर बहुत सारे जो--

और जो ग्लास है वो अ शेप में है।

ये एक हॉस्पिटल है जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

जहां पे जो जिम के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं।

एक अंकल जो है वो करा रहे हैं जिम और बहोत --

ये एक बीच में एक लड़की खड़ी हुई है।

अ पुतला है जो लोटस पे है।

ये क करियर इंगीनीटी अ कोचिंग इंस्टिट्यूट करके लिखा हुआ है।

साइड में दो और विंडोज दिखाई दे रहा है और ऊपर एक सेंटेक्स का टाकी दिखा--

और जो बाउंड्री है वो वॉल से बनाया हुआ है।

बीच में जो गेट हैं वो व्हाइट कलर का दिख रहा हैं।

और साइड में जो है वो सन का साइन दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर जो है वो दो खिड़की दिखाई दे रहा है।

सोलर पैनल के नीचे एक टंकी है सिंटेक्स का।

और बहुत सारे पतरे हैं उसके ऊपर लगाया हुआ है।

और साइड में बहोत सारे देवियाँ है और बीच में एक पंडित है।

यह एक शॉप का ओपनिंग हुआ है ऐसे दिखाई दे रहा है।

जहाँ पे बहुत सारे अह ऊहं डिस्प्ले किया हुआ है स्वीट्स औ-और नमकीन और चॉकलेट्स वगैरा।

दो अंकल लोग बैठे हुए ऐसे दिख रहा और फ्रूट्स दिखाई दे रहा मौसंबी संतरा --